इसकी दीवालों पर काफी अच्छी-अच्छी लाल और येलो कलर की डिजाइन बनी हुई है इसका बाहर एक गेट भी लगा हुआ है।